यहां पर काफी सारे लोग हैं जो पानी में मजे कर रहे हैं सीढ़ियां हैं।

और यहां पर पीछे लाल रंग का झंडा लगा है काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लाइट लगी हुई है।